दोनों के कपड़े मिलते हैं जहां पे एक आदमी खड़ा है और दो तीन कस्टमर आए हुए हैं जो अभी खरीदी कर रहे हैं।

यह एक पेट्रोल पंप है जहां पर पेट्रोल डीजल मिलता है उचित दामों में--

हाथों हाथ ट्रांजैक्शन करते हैं सब कुछ बहुत--

स्कूटी अ सब प्रकार की गाड़ियों की रिपेयरिंग की जाती जहां पे और जे बहोत अच्छी शॉप है जहां पे कम दामों में --

रिपेयरिंग किए जाती है और बहोत अच्छी दुकान हैं वाटी ऑटो रिपेयरिंग सेंटर है ये बहुत अच्छी शॉप है।

और इसके बाहर एक नहीं दो बाइक खड़ी है और--

विकेट है अम बहोत अच्छा स्टेडियम मे बहुत अच्छा ग्राउंड है।

और जे बिल्डिंग का काम चल रहा है अभी बहोत अच्छी बिल्डिंग है।

फ्लेयर्स है बहोत अच्छी तैयारी कर रहे है और जहां पे डंबल्स वगैरा भी है एक्ससाइज वगैरा करने के लिए।

बहुत अच्छा व्यू है बहुत अच्छा एकदम वातावरण शांत एकदम देख के बहुत अच्छा लग रहा है और पानी जा रहा है।